में जन्म होता है जोकि ईशा मशीह के बारे में बता रहे हैं कि ईशा मशीह एक --

सामने से एक लाइन जा रही है। जिसमे कि हर और की लाइन जा रही होती है और ये है।

और कुर्सिया लगी होने पर बीच मे टेबल होने पे कस्टमर इसपे रखकर खाता हैं।

यहाँ पर कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े अपना छोटे छोटे का शिकार करके अपना पेट भरते हैं और वह --